बाउंडर भी दिया है लोहा का और सीढी भी बो सुंदर का है।

ये तो क्या दुकान शॉप है।

बाहर में रेड कलर की एक डस्टबिन साइड डस्टबिन होगा।

ये तो एक बस स्टॉप है शायद।

इसमें तो देखा जा रहा है जो चार का टेबिल वो भी है।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

यह तो क्या दुकान के जैसा लग रहा है।

जो रास्ता एदम बहुत सुंदर है जो झूलना बोलता है इसके झूलना भी एक है।

ये तो एक अस्पताल है।

बाहर में त्रिपुरा स्टेट हज कमेटी पोस्टर लगा हुआ है।

इसमें तो एक छाता भी दिखाई दे रहा है।

जो कस्टमर आएगा वो बैठने वाला जो दो टेबिल है।